इनके गले में साँप तथा सिर पर अर्द्धचंद्र बना हुआ है।

यह एक काली माता का मंदिर है इसके बाहर जय माँ काली मंदिर लिखा हुआ है।

और यहाँ बहुत सारे कपड़े हेंगर में टंगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के सूट तथा चुन्निया टंगी हुई हैं।

यह अम्बिका क्लॉथ सेंटर जलकल रोड देवरिया में स्थित है। इसके बाहर हैंगर में साड़ियां टंगी हुई हैं तथा बगल में स्टोर है।

बिराबरजी टैक्सटाइल्स साड़ियों के थोक विक्रेता की दुकान है जो मोती लाल रोड देवारिया पर स्थित --

के पास एक औरत और एक व्यक्ति खड़ा है। और इसके बगल मे एक ग्रोसरी की शोप (शॉप) है।